वहा पीछे साइड में जंगल दिखाई दे रहा है और यहां पर खेत में कुछ बंधियो में पानी भरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पिंक कलर की बस दिखाई दे रही है जो पिंक कलर के अंदर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं कुछ खाली दिखाई दे रहे हैं।

और जस्ट सामने यहां पर एक अअअ पोर्च के सामने एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

मेला दिखाई दे रहा है। मेले के अंदर जंपिंग अ- वाला स्टैचू दिखाई दे रहा है। यहां पर बच्चे जंपिंग करते दिखाई दे रहे है।

एक बच्चा बैठा दिखाई दे रहा है चेयर पर और वो कटिंग करा अपने बाल कटिंग कराते दिखाई दे रहा है।

अ- एक अ- उम्म- लोहे का गेट अ- दिखाई दे रहा है। उसके भीतर साइड में कुछ मंदिर है दिखाई दे रहा हैं।

ये एक बब्बर शेर दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह जाली में कैद है करा दिखाई दे रहा है।

अ- ईंट से बना दिखाई दे रहा है। इसके आजु बाजु लाइटिंग दिखाई दे रही है मंदिर दिखाई दे रहा हैं।